यहां मुझे एक नीले कलर का ट्रक खड़ा दिख रहा है।

यहां मुझे एक वाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक कुर्सी दिखाई दे रही हैं यहां मुझे एक झाड दिखाई दे रहा हैं।

हरे कलर का। यहां मुझे कुछ घास और चारे दिखाई दे रहे हैं हरे कलर के--

यहां मुझे एक जमीन दिखाई बड़ी सी दे रही है।

यहां मुझे दो इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।